यहाँ पर एक मशीन जैसा है और मशीन बहुत सारी मशीने हैं और उसके आगे एक आईना है।

जह एक जिम जैसा नजर आ रहा है और यहां पे बहुत सारी मशीन रखी हुई है और कुछ पिलर से और पिलर्स से कुछ पोस्टर्स लगे हुए है।

यहाँ पे एक रास्ता नजर आ रहा है और रास्ते की लेफ्ट साइड में एक गाड़ी नजर आ रही है और कुछ गेट नजर आ रहे हैं और एक मंदिर जैसा नजर आ रहा है।

एक मंदिर जैसा नजर आ रहा है और एक गेट नजर आ रहा है।

यहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है और एक लेफ्ट साइड में एक कार पार्क की है और एक पिलर नजर आ रहा हैं वहां पर एक पौधा लगा हुआ है। और --

और एक मंदिर जैसा नजर आ रहा है और सीढ़ीओ पे एक आदमी बैठा हुआ है।

और एक जिम जैसा नजर आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी मशीन रखी हुई है।

और बहुत सरे पिलरस नजर आ रहे है।

और यहाँ पे एक आदमी नजर आ रहा है जिसके हाथ में बैग है और यह एक बस स्टॉप जैसे नजर आ रहा हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग है और कुछ बस नजर आ रही हैं।